इसमें एक लाल कलर की बाइक है और एक ब्लू कलर की बाइक है और इसमें फर्श लगा हुआ है | फर्श में बोहोत बढ़िया से लाइट लाइट का भी व्यवस्था है इसमें और इसके बगल में एक डोर है | डोर के डोर पे एक पिक्चर चिपकाए गया है जिस पे स्कूटी का पिक्चर है |

इसमें बहुत सारे एक पिक्चर भी है।

जो कि एक रेस्टोरेंट की एक चित्र है और बगल में बिस्लरी का बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है।

चित्र में हम यह देख पा रहे हैं की यह चित्र एक वर्कआउट जिम की है।

पेमेंट उस बगल में एक पेड़ है स्टेडियम में घास अच्छी लगी हुई है जो की बहुत हरी-भरी है।

चित्र में हम देख रहे हैं की ये चित्र एक चिड़ियां घर से लिया गया है।